पे बच्चे लोग का एक दृश्य दिखाई दे रहा है।

बहोत सारे गेट हैं बहोत सारे खिड़कियां भी हैं और एक गाड़ी भी लगाया हुआ है।

और रोड का दृश्य भी दिखाई दे रहा है और पहाड़ का भी दृश्य दिखाई दे रहा है।

यहां दो बस का दृश्य दिखाई दे रहा है बस का कलर है रेड आ ब्लू है।

दो बस दिखाई दे रहा है और ऑटो भी दिख रहा है और बिल्डिंग्स भी दिख रहे हैं और पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहा है।

टेबल में पानी बोटल भी दिख रहा है बहुत सारा ऑरेंज कलर का डब्बा भी दिख रहा है और पेन भी दिख रहे हैं।

एक दुकान भी है दुकान में बहुत सारा ठंडा भी रखा हुआ है।

एक बिल्डिंग का दृश्य दिखाई दे रहा है दीवार पे लिखा हुआ है भी होटल बहुत सारे सीढ़ी भी हैं।

एक व्यक्ति है जो की बाइक में बैठा हुआ है और बहुत सारे बिल्डिंग्स भी दिख रहे हैं।

बिल्डिंग्स में वाइट बल्ब भी जल रहे हैं गेट के पास एक व्यक्ति भी खड़ा है जोकि रेड कलर का कपड़ा पहना हुआ है।

ने इसमें बहोत सारे खिड़की भी दिख रहे है खिड़की का कलर है ब्राउन नीला कलर का आकाश भी दिखाई दे रहा है।

बहोत सारे पेड़ पौधे भी दिख रहे है और घर भी दिख रहे हैं।

बहुत सारे बच्चे का दृश्य दिखाई दे रहा है बहुत सारे लड़की लोग हैं।

मेन्स के गेट में पर्दा भी लगाया हुआ है और ऊपर में फ्लावर्स से डेकोरेशन पे किया गया है।

यहां एक टेबल भी रखा हुआ है जो कि ब्राउन कलर का है टेबल में एक पर्दा बिछाया हुआ है जो की कलर है व्हाइट ब्राउन ।

बैलून का कलर है रेड व्हाइट व्हाइट बल्ब भी जल रहे हैं गमला में--

कृष्ण भगवान जी के माला बहुत सारे चढ़ाया हुआ है।

यहां एक बाइक शोरूम का दृश्य दिखाई दे रहा है यहां बहुत सारे बाइक भी है और कुर्सियां हैं।

यहां पे क्लास रूम का दृश्य दिखाई दे रहा है दो कारबोर्ड रखे हुए हैं।